जिसका नाम है भारतीय भवन एजेंसी।

ये एक ही साइड में सजाया गया है नीले रंग के ये लाइट्स ।

आदमी भी खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ और अ पीछे की तरफ एक ईमारत भी है।

ये भेड़ बकरियों की रहने की स्थान है।